बने हुए हैं और एक सिंह घोड़े टाइप डिजाइन बनाई गई है और यह ताजमहल की प्रकार से बनाया गया है चार--

भी लिखा हुआ है और बहुत सारे पुस्तक है और बहुत सारे हिंदी में है और इंग्लिश में की हर प्रकार में--

यहां एक चबूतरा बनाया गया है चार कुटिया है काफी बड़ा है और दो पोस्ट आसपास रखे हुए हैं और यहां चढ़ने के लिए चार से पांच--